और कई सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहै हैं | यहाँ पर कई सा कलर दिखाई दे रहे हैं । बादल का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है ।

पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसकी दीवारों का कलर येलो रेड और पर्पल दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिल्वर कलर का फर्नीचर दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर कई सारी दुकान दिखाई दे रही है | यहाँ पर कई सारे कांच का फर्नीचर दिखाई दे रहा है कुछ ऑटो दिखाई दे रहे है जिनका कलर ब्लू रेड ब्लैक दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और कुछ येलो कलर के पोस्टर दिखाई दे रहे --

ये यहाँ पर कई सारे पेड-पौधे दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर ग्रीन ब्लैक दिखाई दे रहा है। कुछ --

आसमान का कलर व्हाइट ब्लू दिखाई दे रहा है और कुछ पानी के झरने दिखाई दे रहे है एक प्रतिमा दिखाई दे रही है यहाँ पर कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर कुछ घर दिखाई दे रहे हैं जिनकी दीवार का कलर रेड और पर्पल दिखाई दे रहा है और कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है।

पर कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और कई सारी आकृतियां दिखाई दे रही हैं।